इस फोटो में एक पथर है जो उअसके आस पास बहुत से लोग है यह एक गुफा है जिसको देख रह है इसके ऊपर पेड़ पोधे लगे हुए है।

'' यह फोटो एक स्कूल की है जहाँ पे कुछ लड़कियाँ डेकोरेट कर रही हैं और मैंम लोग उनको देख रही हैं उसके पीछे भी कुछ लड़के है जो की खड़े होकर उनको देख रहे हैं ।''

फोटो में एक मेडिसिन है जहाँ पर कुछ दवाईया ले रहे है एक मैम है जो की दवाईया लिख रही है एक लड़का है जो दवाईया ले रहा --

और इसके पीछे ब्लैक कलर की जाली लगी हुई है। यह दे इसके पीछे एक देवाल है जोकि लाल कलर की है। इसके ऊपर येलो कलर का पीलर है उसके साइड मे एक लडकी खड़ी हुई है।